यह किसी स्कूल में बने स्टेज की तस्वीर है।

इस स्टेज पर लड़कियां हाथ जोड़कर इधर उधर जा रही हैं।

और पंछी के सामने काफी सारे बड़े बड़े पत्थरों के ढलान हैं।

प्लेटों को एक टेबल पर रखा गया है।

मस्जिद के सबसे ऊपर में एक लाइट भी है।

सामने काफी सारे बैठने के बेंच बने हुए हैं और आसमान साफ है।

मेन गेट पूरा लोहे का जालीदार बना हुआ है।

यह किसी मस्जिद का तस्वीर है।

जिसमें एक व्यक्ति कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है।

यह एक पत्ता गोभी का खेत है।

यह ट्रैक्टर नीले रंग का है और कुछ लोग जा रहे हैं।

सामने की दिवार पूरा सफेद रंग का है।

यह किसी व्यक्ति की तस्वीर है।

और सामने बड़ा सा बैनर लगा हुआ है।

कुछ लोग अपने धान का थ्रेस करवा रहे हैं।

बस स्टैंड के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दुकाने हैं।

पीछे एक ए_सी है एक टेबल फैन है।

और उसपर प्लास्टिक का रैपिंग किया हुआ है।

यह किसी सुपरमार्केट का तस्वीर है।

ऊपर भी सफेद रंग का सीलिंग है जिसमें काफी सारे लाइट्स लगे हुए हैं।

इसके पीछे काफी सारे सुखा घास और पौधा है।

मकई का कुछ दाना दिख रहा है जो कि पीला रंग का है।

ऊपर का छिलका पूरा हरा रंग का है।

इसमें काफी सारे कमरे भी हैं और आसमान काफी खराब है।

उस पर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है।

और ऊपर कोना में एक कैमरा लगा हुआ है।

इस काउंटर के सामने काफी सारी टेबल है और कुर्सियां भी।